लाल नीले सफ़ेद हरे रंग से कुछ पेड़ की झाड़िया भी इनकी पेंटिंग मे नजर आ रही--

इस फोटो मे एक क्लास रूम दिखाई दे रहा है जिसमे बच्चे बैठ कर ड्राइन्ग करते नजर आ रहे है।

सा ग्राउंड नजर आ रहा है बिल्डिंग मे बहुत नजर आ रहा है ।

मकान हरे लाल रंग के दिखाई दे रहे नीचे सड़क कच्ची नजर आ रही हैं ये लोगोने पगड़ी बांध रखी हैं गले--

ये फोटो मे एक महिला भरत नाट्यम का डांस करती हुई दिखाई दे रही है जिसकी साड़ी लाल और केसरिया रंग--

नजर आ रही है पीछे खुर्सी का रंग काले और लाल रंग की राखी हुई है। वेस्ट --

स्टेप्लर फेविकूईक मैडम कुछ सफ़ेद ड्रेस वाले बच्चे नजर आ रहे है। पीछे दीवार--

फोटो मे पत्थरो के बिचो बीच एक गुफा मे इंसान जाता हुआ नजर आ रहा हैं जो अपनी पैर और हात जमीन पर--

पतेले वालती ट्रे प्याज के छिलके टेबल कपड़े बड़ी बड़ी हांडिया और कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे।